इंडियन ऑइल कारपोरेशन लिमिटेड ---

और पथर नज़र आ रहे है दूर में हम देख सकते है दो पहाड़ दिखाई दे रहे है।

व्यक्ति जन दिखाई दे रहे है कुछ लोग खड़े हुए है और कुछ लोग बैठे हुए है।

और हम देख सकते हैं की पेड़ भी दिखाई दे रहा है इन सभी के बिच और ऊपर हम पिली टंकी और एक सफ़ेद घर--

यहाँ पे हम देख सकते है की कुछ लोग कुछी के ऊपर बैठे हुऐ है और सामने टेबल रखा हुआ है।